बाहर में बहुत सारा आदमी है।

इस मूर्तियां के ऊपर कुछ चित्र मछली का बनाया हुआ है।

बहुत अच्छा से सजाई गई है।

यहां पे बहोत सारे लेडीस लोग बैठे हैं।

यह ऑटो का शोरूम है।

इस दुकान में बहुत सारा अलमारी है।

इसके गोले गोले हाता मारा हुआ है।

यह एक हॉस्पिटल है।

यहां पर्दे भी लगाए गए हैं।

यहां दो पाये दिख रहे हैं।

यहां एक पोल है।

इसमें बहुत सी ठंडा रखी हुई हैं।

इस रुम में एक कुलर दिखाई दे रहा है।

यहां लाइटें लगी हुई है।

प्लेट में चटनी है।

यहां लाइटे लगी हुई है।

यहां पर टेबल भी दिख रहा है।

इस रूम में पंखा भी लगाया है।

खिड़कियां में लोहे के जाली लगाई हुई है।

यहां पे बहुत सारे बकरियां हैं।

बकरियां के पास लोहे की स्टैंड है।

मे एक बड़ा से बिल्डिंग भी दिखाइ दे--

नीचे फर्श पे टाइल्स है।

इस फील्ड में बहोत हरा भरा घास दिखाई दे रहा है।

यह पतरातु लोक रिसोर्ट है।

सामने एक टेबल भी रखा हुआ है।

यह एक गिफ्ट की दुकान है।